मकान बनल बाह। नीचे मकान के बढ़िया-बढ़िया शीशा लागल बाह। बीच में बढ़िया-बढ़िया घास व लाइट बी बहा।